बाल्टीन है बिस्किट है तंदूरी चाय वाला स्पेशल लोहा का गेट है बगल में--

औरत लोग है काफी बच्चा लोग है छोटी छोटी बच्ची सब औरत--

देखने से लग रहा है कबड्डी का प्रतियोगिता होने वाला है।

सारा बैलून है फिर बहोत सारे सारे अलग अलग प्रकार के पोस्टर लगायें हुए है।

घर के सामने बहुत सारा साइकिल लगा हुआ है शटर है एक महिला खड़ी हुई है एक मरद खड़ा हुआ उआ --

एक हीरो का एजेंसी है एक दो तीन तीन मंजिला चार मंजिला।

एक एन_जी_ए एन_जी_एन पब्लिक स्कूल है जो एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है उसके सामने नीचे लिखा हुआ है ऑफिस आगे कुछ पेड़ पौधा लगाए गए हुए हैं।

आगे कैप्टन विभाग का पाइप लगा हुआ है दु गो खंभा गाड़ा गया है।

इधर में कुछ आदमी बैठे हुए हैं अति ऑरेंज कलर का पेंट है शटर लगा हुआ है।

दो कुर्सी है सामने भी एक घर है एक ठेला लगा हुआ है।

चादर डॉक्टर लग रहा है कुछ किसी को दवाई दे रहा है एक और आदमी बैठा हुआ है फिर उसके पीछे एक और आदमी है फिर उसके सामने एक और आदमी है पीछे बुलु कलर का पर्दा है।